बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं इस पार्क में बाउंड्री की हुई की गई है।

यह एक बहुत बड़ा शॉप है जिसमें --

इसके ठीक इसके सामने एक पतली सी गली है इसके अगल-बगल में बहुत सारे पौधे लगे हैं जो की बहुत सुंदर लग रहा है।

यह समुद्र की मछलियाँ हैं जो की बहुत दूर से आती है इसका रेट भी ज्यादा होता है खाने में मजा आता है।

इसमें झींगा भी दिख रहा है और इसे बेच रहे हैं।